वो तो है। यहाँ पे आप ।

जो है वो डिज़ाइन बहोत ही सुंदर बना हुवा है। यहाँ पर बहोत सारी --

जोकि जो भी सामान --

ताकि यहाँ से भाग ना सके पीछे की तरफ आपको कुछ बिल्डिंग और पूरा --

और हाथ में कॉमिक बुक ले रखी --

सिर्फ छाती तक ही मूर्ति है नीचे में उसका स्टैंड बनाया गया है और --

इसके उपर एक ओम का जो है चित्र बना हुआ है।

मजे ले रहे हैं ये पानी के अंदर --

दो तीन ज़ेब्रा दिख रहे होंगे और --

कुछ जंगल वाला बना रखा है। बहोत ही अच्छे पेड़ - पौधे लगा रखे हैं।

शॉप के हैं जोकि शॉप जो हैं वो बैकरी की है।

एक डम्मी है यहाँ जिस जिसके ऊपर एक टी-शर्ट और एक पैंट पहनाई गई है।

ये हॉस्पिटल डेंटल एंड आई कीय डिपार्टमेंट का है जोकि दाँत और नेत्र का होता है।

ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं येये स्कूल का है और जो स्कूल है राजकीय पॉलिटेक्निक --

जिसका बोर्ड आपको ऊपर लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये पॉलिटेक्निकल है।

त्यौहार के टाइम का दिवाली के नज़दीक दशहरे का --

ये जो तस्वीर आपको नज़र आ रहे है टेबल के ऊपर एक केक रखा गया है जोकि बहोत ही सुन्दर ओ --